इसमें उम्म पेट्रोल पंप का नाम लिखा हुआ इंडियन ऑयल नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है यहां पे लगी हुई है जो पेट्रोल भराने के लिए यहां आयी हुई नज़र आ रही है यहां पर काफी गाड़ी देखी जा सकती है जो साइड में लगी हुई नजर आ रही है जो पेट्रोल भराने के लिए यहां --

ये फील्ड काफी बड़ा दिख रहा है ये फील्ड काफी है ये पेड़ में कुछ काम करते हुऐ मशीने दिख रहीं है।

यहां पर कुछ लोग भी जमा है जो इसका समान लेते है हरियाली सी भड़ी दिख रही है यहां पर कुछ मैच होने वाला है जो देखने के लिए लाइव काफी लोग जमा।